ए गुलाब का फूल ह फुलवा में पत्ते लगल ह ए पूरा बुके नियर बनल ह उकरे अगल बगल पूरे फूल गिरल।

हई बड़ा सा पार्क ह पारक्वा के सामने बिल्डिंग ह खूब बड़ सा और सफेद रंग का और ऑरेंज रंग का पेंट कलर बिल्डिगियां --